यहां पर बहुत सारे आदमी है। कुछ दिए जल रहे है। कुछ घर बनाए गए हुवे हैं।

के ऊपर वाला बैनर का कलर ब्लू है जिसमें लिखा हुआ है साइ राम हॉस्पिटल ।

यह एक घास का मैदान है। यहां पर कुछ टाइल्स लगी हुई है साइड में बहोत सारे घास उगे हुए हैं ।

ऊपर बहुत सारे लाइट लगाएं गए हैं चार खिड़कियां भी है।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

एक बैडमिंटन का क्रोक भी दिखाई दे रहा है। एक मच्छर मारने वाला बैटमिंटन भी दिखाई दे रहा है। इसके साइड में सोल्डिंग मशीन भी रखा गया है।

यहां पे तीन पराठे रखे गए हैं एक पराठे के ऊपर एक बीच में दरार पड़ी हुई है।

इसके ऊपर मे एक चकदनिया जैसा लाइट जलाई गई है। यहां पर कलश यात्रा जा रहा है। कलश पर कलश लेकर सब लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर कुछ लड़के लड़कियां खड़ी है जिसमें से एक लड़के ने रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है उसने अपने हाथ पे मोबाइल रखा है।

ड्रावोर भी है जिसमें गोल्डन कलर का कलर लगाया गया है।

जिसमें टावल का कलर रेड और येलो है।

एक कपड़े का कलर येलो एक कपड़े का कलर ग्रीन एक कपड़े का कलर येलो रेड है।

बच्चा स्टेज पर खड़ा है। एक बच्चे ने माइक ले रखी है। एक बच्चा साइड में खड़ा है जिसके आगे ब्ल्यू कलर का बॉक्स रखा गया है उसके साइड में एक डीजे बॉक्स भी रखा गया है।

कुर्सी का कलर ब्राउन है पीलर में वाइट कलर का टाइल्स लगाया गया हैइसके ऊपर लाइट जली हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट है इसमें साइड में एक रेफ्रिजरेटर है जिसके ऊपर रेड कलर में कोको कोला लिखा हुआ है।

इसके ऊपर शीशा लगाया गया है उसके बाद में एक पिंक कलर का कपड़ा रखा गया है।